यहाँ पे दो छत का बिल्डिंग दिख रहा है जो सफ़ेद रंग में पुताया हुआ है यहाँ बिजली के खंभे दिख रहे है यहाँ पोस्टर लगा है इसमें खुशियों के धारा--

और बगल मे एक और बिल्डिंग है जो सफ़ेद कलर। मे पोताया हुआ है।

समुद्र जैसा लग रहा है ये बीच का किनारा है यहाँ लोग आए हुए है।

यहाँ पे गाड़ी का यह गैराज है यहाँ--

और गाड़िओ के लिए अलग- अलग निशान बना हुआ है बाई फॉर बाई थ्री बाई टू बाई बाई वन बाई फाइव हर के हर गाड़िया अलग-अलग जगहों पर रूकती है उसके लिए निशान बना है यहाँ एक गाडी टूटी-फूटी हालत में दिखाई दे रहा है।

झरना ज्यादा ऊंचाई से गिर रहा है यहाँ पानी सफ़ेद दिखाई दे रहा है यहाँ पे बहोत बड़े-बड़े पेड़-पौधे दिखाई दे रहे है ये जगह बहोत सुन्दर दिखाई दे रहा है यहाँ लोग घूमने आते होंगे।

बना हुआ है यहाँ बहोत सारी लाइटे जल रही है ब्रिज के निचे से गाड़िया दिखाई रही है लोग यहाँ वहाँ चल रहे है ट्रैन पटरी है।

एक जगह है जहाँ पे ये दो बिल्डिंग का इमारत बना हुआ है यहाँ पे बड़े-बड़े पेड़ दिखाई दे रही है यहाँ मंदिर भी दिखाई दे रहे--

एक जिम जैसा लग रहा है।

या फीर ढलाई के लिए सेटरिंग कर रहे है यहाँ छड़ बांध रहे है यहाँ पे कुछ सामान बिखरा हुआ है यहाँ पे मजदूर--

मेला लगा हुआ जैसे के लग रहा है यहाँ पे एक फल का दुकान है।

यहाँ पे बहोत बड़ा मेला लगा है जैसे लग रहा है यहाँ पे झुला है।

इसके बिच मे मैदान है मैदान के चारो किनारे पर डिज़ाइनर वालस पर उम पौधा लगा हुआ है बिच मे एक मैदान है।

जलेबियाँ बहुत सुन्दर दिखाई दे रही है पीले पीले रंग की जिसको देख कर खाने का मन कर रहा है जलेबियाँ सभी की फेवरेट होती--

एक आदमी चला रहा है लग रहा है ये नाव वाले मछलियाँ पकड़ ने के लिए जा रहे है समुन्द्र का पानी नीला दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे एक कप का दुकान है इसमे बहोत सारी कप है हर डिज़ाइन मे हर रंग मे हर प्रकार कि कप बने है।